यहां पे पिलर में लगा हुआ घर बहुत अच्छे से सजाया हुआ है ब्लैक पैंट भी किया है और यहां पे लिखा है क्या-क्या ना लिखा हुआ है यहां बहुत अच्छे लग रहे है देखने मे और ब्लैक पेंट बहुत अच्छे लग रहे देखने में।

बहुत अच्छे से इस किताब में देखने में दुकान ये।

यहाँ हम देख सकते हैं गाड़ी का इंजन खुला हुआ है यह इंजन को ठीक कर रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में गाड़ी सफ़ेद गाड़ी है बहुत बढ़िया लग रहा है।

यहाँ पे देख रहे है साड़ी ओ मिल रहा है तीन रंगा साड़ी है चार रंगा साड़ी यहाँ भी लाल है हरा है।